जहां पर बैंक लिखा है और यहां पर कुछ लोग भी नज़र आ रहे हैं।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

एक नदी दिखाई दे रही है यहां पर पास में एक पार्क बना हुआ है और यहां पर --